घर है घर का कलर येलो है वाइट दरवाजा है ब्लैक कलर का शीशा है घर के बहार --

ब्राउन है एक आदमी है नीला कलर का शर्ट पहना हुआ है बच्चों का स्लाइड है कलर येलो है।

वाइट कलर का शर्ट पहना है दुर्गा मां का फोटो है अलमारी है अलमारी में बहुत सारे किताब रखे हुए हैं।

येलो है टेबल है टेबल का कलर येलो है वाइट है।

म्यूजिक रूम है रूम का कलर वाइट और मैरून है फर्श वाइट है एक लड़का है वाइट कलर का कुर्ता पहना है चश्मा लगाया है।

एक लड़की है येलो कलर का फ्रॉक पहनी है और एक लड़की है येलो कलर का --

लगाई है पियानो है तबला है तबला का कलर ब्राउन है वाइट रस्सी है टेबल है।

रूम है रूम का कलर ऑरेंज और ग्रे है फर्श रेड और ग्रे है एक लड़का है लड़के ने वाइट कलर का--

योगा रूम है रूम का कलर व्हाइट और ब्लैक है फर्श ब्लैक है।

खिड़की पर बहुत सारे गमले रखे हुए हैं गमलों का कलर रेड है ब्राउन है।

घर है घर का कलर वाइट है खिड़की सारे खुले हुए हैं खिड़की का कलर ब्राउन है।

टंकी है टंकी का कलर वाइट है बाइक है बाइक का कलर ब्लैक है रेड है।

टायर ब्लैक है स्कूटी है स्कूटी का कलर रेड और ब्लैक है ब्लैक सीट है।

ऑफिस है ऑफिस का कलर व्हाइट है दरवाजे का कलर ब्राउन है डेक्स ब्राउन और वाइट है।

एक आदमी है वाइट कलर का कोट पहना हुआ है बहुत सारे बैलून हैं बैलून का कलर व्हाइट रेड है।

हाथ में फ्लैग है फ्लैग का कलर रेड और येलो है।

लड़की ने ब्लू कलर का शर्ट पहना हुआ है फर्स वाइट है बहुत सारे जूते चप्पल सैंडल लगे हुए हैं जूतों का कलर वाइट है ब्राउन है ब्लैक है।

एक लड़की है ग्रीन और रेड साड़ी पहनी है रेड कलर का ब्लाउज है दोनों हाथ पकड़ी हुई है।

एक लेडीस है वाइट कलर का कोट पहेनी है मुंह में माक्स लगाई हुई है बहोत सारे डस्टबिन है कलर ब्राउन है पिंक है।

डस्ट बिन के ऊपर ब्लैक कलर का पीनी है बहुत सारा बेड लगा हुआ है बेडशीट का कलर ब्लू है।

हाथ में वाइट कलर का धागा बांधी है चश्मा लगाई हैऔर एक लड़की है वाइट कलर का फ्रॉक सूट पहनी है।

घर है घर का कलर पिंक है ब्लू कलर का बोर्ड है वाइट कलर से लिखा हुआ है एक लड़की है।

पॉकेट में फोन रखी है एक लड़का है वाइट कलर का शर्ट पहना है वाइट कलर का सॉक्स है ब्लैक शूज है।

रूम है रूम के दीवार पे दो फ्रेम लगे हुए हैं फ्रेम में फ्लावर बना हुआ है फ्लावर का कलर येलो है ऑरेंज है।

बेड पे एक बैग है बैग का कलर ब्लैक है टेलीफोन है स्विच बोर्ड है बोर्ड का कलर व्हाइट है।

बहुत सारे पेड़ है काउंटर के ऊपर बहुत सारे चॉकलेट के डब्बे रखे हुए है डब्बो का कलर पर्पल है ऑरेंज है व्हाइट है।

घर है घर का कलर येल्लो है व्हाइट है खिड़की पे बैलून लगा है बैलून का कलर रेड है ग्रीन है।

फूल से सजाया गया है फूल का कलर ऑरेंज है।

हाथ में माइक लिया हुआ है चेयर है चेयर का कलर व्हाइट येलो है एक लेडीज़ है मेहरून कलर का सूट पहनी है।

कारपेट है कारपेट का कलर ग्रीन है म्यूजिक बॉक्स है कलर ब्लैक है।

पिन्नी पे मछली का कलर व्हाइट है ब्लैक है तराजू है तराजू का कलर सिल्वर है एक डब्बा है।

घर है घर का कलर व्हाइट है बॉर्डर ब्राउन है घर के ऊपर एक टंकी है टंकी का कलर ब्लैक है।

घर है घर का कलर ब्राउन रेड है दरवाजा ब्राउन है घर के बाहर एक नया टोटो है।

ऑटो का कलर रेड है ब्लैक है एक लेडीज है रेड कलर का साड़ी पहनी है।

दुकान है दुकान का बोर्ड रेड व्हाइट है दुकान के बाहर बहुत सारे चेयर्स रखे हुए है चेयर का कलर --

होटल रूम है रूम का कलर नीला है पंखा ब्लू है फर्श ब्राउन व्हाइट है बहुत सारे कुर्सी लगे हुए हैं।

एक आदमी है रेड कलर का शर्ट पहना है एक औरत है पिंक येल्लो कलर का साड़ी पहनी हुई है।

दुकान है दुकान का कलर व्हाइट है फर्श व्हाइट है बहुत सारे फ्रीज रखे हुए है फ्रीज का कलर ब्लू है ब्लैक है रेड है।

एक चेयर है चेयर का कलर व्हाइट है मिक्सर है मिक्सर के डब्बों का कलर व्हाइट है ब्लू है।

दुकान है दुकान का कलर येल्लो है ग्रीन दरवाजा है ब्राउन कलर का काउंटर है।

बहुत सारे बाइक लगे हुए हैं बाइक का कलर ब्लैक है बाइक ने फूल माला पहना हुआ है माले का कलर पिंक है।

ब्राउन है बहुत सारे जिम मशीन रखे हुए है कलर ब्लैक है रेड है सीट ब्लैक है।

क्लास रूम है क्लास रूम का कलर व्हाइट है रेड है पर्पल है बहुत सारे डेस्क लगे हुए है डेस्क का कलर ब्लू है एक लड़का है।

व्हाइट और रेड शर्ट पहना हुआ है कार्डबोर्ड है कलर पिंक है।

और ब्राउन है बहुत सारे लकड़ी डंडे रखे हुए हैं रस्सी है रस्सी का कलर ब्लैक है ब्राउन है एक आदमी है व्हाइट कलर का--

व्हाइट कलर का मास्क लगाई है बुलेट है स्कूटी है बाइक है स्कूटी का कलर व्हाइट है दुकान के बाहर टी_वी रखा हुआ है।

टी_ वि का कलर ब्लैक है कार्टून के डब्बे है डब्बो का कलर ब्राउन है।

बुक स्टोर है स्टोर के अंदर बहुत सारे बुक और कॉपी रखे हुए हैं एक आदमी है मैरून कलर का शर्ट पहना हुआ है व्हाइट कलर का डॉट है।

बटन का कलर मैरून है बहुत सारे फेविकोल हैं फेविकोल का कलर व्हाइट है ऑरेंज है ब्लू कैप है।

बुक स्टोर है बॉर्डर पर्पल है बहोत सारे बुक कॉपी रखे हुए हैं घड़ी है घड़ी का कलर व्हाइट है पंखा ब्लैक है।

केला है ब्लू कलर का पिन्नी बिछाया हुआ है बहुत सारे फ्रूट रखे हुए हैं फ्रूट में एप्पल है संत्रा है जामुन है अनार है।

एक टब है टब का कलर ब्लैक है पिन्नी है पिन्नी का कलर ब्लैक है ठेले का सीट का कलर ब्लैक है एक डब्बा है कलर ग्रे है।

दुकान है दुकान का कलर व्हाइट है ब्लैक है दुकान के अंदर बहुत सारे ट्रॉली रखे हुए हैं कलर रेड है ब्लू है पर्पल है।

फ़ोन का दुकान है दुकान का कलर ऑरेंज है कैमरा है कलर व्हाइट है बहुत सारे फ़ोन रखे हुए है।

फ़ोन का कलर ब्लैक है चेयर है चेयर का कलर पिंक है।

कारपेट ग्रीन है बहोत सारे डब्बे रखे हुए हैं डब्बों का कलर ब्राउन है।